यहाँ पे बहुत घनघोर वन है जो कि पहाड़ों के बीच में स्थित है उसके बीच में कुछ स्थल पर्यटक जैसे बनाए हुए हैं और उसके दोनों आजू-बाजू में कुछ नीलगिरी के पेड़ जैसे कुछ फवारे दिख रहे हैं।

नीचें में पत्थर सब बिखरे हुए प्रतीत हो रहे है।

यह एक कॉफ़ी स्टोल है जिसके बाजु में एक व्यक्ति कॉफ़ी बेचते हुए नज़र आ रहा है और वह एक व्यक्ति कॉफ़ी पी रहा है पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मास्क पहना है और देख रहा हैं।

यहाँ पे एक लड़का खड़ा होकर सेल्फी लेते दिखाई दे रहा हैऔर अपने कान में इयरफोन को ठुसा हुआ है और उसके बगल में छोटे-छोटे पेड़ पौधे को उगाए हैं।

बरांदे में गमले सब को लगा दिए है और उसके अन्दर में कुछ पोधे भी लगे हुए है और उसके नीचे में कुछ सीड़ियाँ है और कुछ पेड़ उसके किनारे में है।

उसके किनारे में कुछ छोटे-छोटे पेड़ पोधे भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे स्टील के कुछ बॉडी बिल्डर बनाते है वैसे कुछ उपकरण बनाया गया है इसके किनारे में बहुत से लोहे सब को भी बनाया गया हैं।

यहाँ पे एक औरत कथकली --

उसके नीचे में कुछ घास घास जैसे कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं और घास के पुवाल भी वहाँ पे रख दिए गए हैं।